एक काफी बड़ी स्टेज है जिसमें कुछ बच्चे अपना--

सा बड़े टेबल के पास तीन चार चेयर्स लगी हुई हैं।

यहां पे एक नल लगा है। पास में बाल्टी हैं। काफी बड़े-छोटे पौधे लगे हैं।

पास में एक बड़ा गैरेज भी बना हुआ है।

इस फोटो में एक सरकारी दफ्तर है जिसके बाहर काफी बड़ा पोस्टर लगा है।

इस फोटो में एक छोटा सा पूल है।

बड़ा गार्डन हैं जिसमें काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे भीं लगे हैं और बच्चे खेलते नजर आ रहें हैं।

इस फोटो वीच मुर्गियां का कारखाना हैं।

और काफी पेड़ भी लगे हैं और इस सड़क के ऊपर एक बड़ा पुल भी बना हुआ है।

और आस पास काफी कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं।

के जूते पड़े हुए हैं अलग अलग ब डब्बों में हैं।

पास में एक टूटी फूटी दुकान है।

और दूर दूर तक काफी पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस फोटो विच एक करियाने की छोटी सी दुकान जिसमें एक आदमी पैसे गिन रहा है पास में कुछ फल है।

हर एक गत्ते के डब्बे में अलग अलग डिजाइन मॉडल का मोबाइल है।

और पास में एगो सब्जी खरीदता हुआ खड़ा हैं।

एक पंखा लगे हैं काफी बड़ा केबिन है।

केविन के टेबल पे एक बड़ा कंप्यूटर है।

इस फोटो विच एस_बी_आई के बैंक और ए_टी_एम मशीन की है।

और पास में एक छोटी सी छतरी बनी है और एक बड़ा पेड़ भी लगा है।

इस फोटो विच एक लकड़ के--